मैंने मीरा बाजार का नाम सुना था लेकिन आज देख भी दिया।

ये बिल्डिंगे बहुत सारी है जो सौ के करीब है और पीछे--